के बालों में गोल-गोल जुड़ा बना हुआ है और बहुत सारी चिमटिया लगी हुई दिखाई दे रही है सामने की तरफ शीशा लगा हुआ है अलमारी में कुछ सामान रखा हुआ--

देखिए किनारे की तरफ एक बेंच पड़ी हुई है यहाँ पर सामने की तरफ एक दीवार है दीवार पर एयरटेल का बोर्ड लगा हुआ--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

खिलाड़ी है जो की क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहै हैं यहाँ पर देखिए किनारे की तरफ नीले रंग का तिरपाल लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जैसा कि हम देख पा रहे है यहाँ पर ये एक दुकान है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें वोडाफोन बुक वर्ल्ड लिखा हुआ है और एयरटेल फोर जी भी लिखा हुआ है यहाँ पर सामने की तरफ काउंटर रख--

काउंटर के बाहर की तरफ दो लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहै है बहुत सारा सामान रखा हुआ दिख रहा है किनारे की तरफ बोहोत सारे पोस्टर चिपके हुए हैं।

क्या है? जिन्होंने सफेद रंग की फराक पहनी हुई है और सेंटा वाली टोपी लगाई हुई है सामने की तरफ दो पीले रंग की बस खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

जैसा कि इस दृश्य में हम देख पा रहै हैं यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है यहाँ --

के अंदर काले रंग के बहुत बड़े-बड़े से अंगूर रखे हुए है और यहाँ पर एक लाल रंग का टोकरा भी दिखाई दे रहा हैं।

इस दृश्य में हम देख पा रहै हैं यहाँ पर ये एक मेज रखी हुई है मेज के ऊपर एक प्लेट है।

जैसा कि इस दृश्य में हम देख पा रहे है ये एक चर्च के बाहर का दृश्य है यहाँ पर देखिए चर्च का आकार झोपड़ी का आकार है यहाँ पर बहुत सारी औरतें और आदमी खड़े हुए है और कुछ--

इस दृश्य में हम देख पा रहे है कि यहाँ पर देखिए एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर एक बड़ा सा द्वार बना हुआ है द्वार के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई दिखाई दे रही है किनारे की --

चलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक दान पेटिका भी रखी हुई है यहाँ पर सामने की तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है।

इस दृश्य में हम देख पा रहै हैं यह एक सैलून का दृश्य है जहाँ पर देखिए ये कुर्सीयां पड़ी हुई है यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहै हैं सामने की तरफ --

इस दृश्य में हम देख पा रहै हैं यहाँ पर देखिए ये सरियों का जाल बना हुआ है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहै हैं यहाँ पर दूर पर बड़े-बड़े से वृक्ष--

इस दृश्य में हम देख पा रहै हैं यहाँ पर देखिए ये बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर देखिए सामने की तरफ टाइटन और के रिवाज --

इस दृश्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर ये एक ठेला है और ठेले के ऊपर एक बहुत बड़ी- सी मछली रखी हुई दिख रही है दूर पर कुछ ऑटो --

फ्रीजर भी रखा है सामने की तरफ एक फ्रिज रखी है और बहुत सारा सामान रखा है काउंटर के ऊपर एक तराजू रखा हुआ है अंदर कि तरफ एक लड़की खड़ी हुई है जिसने की मास्क पहना हुआ हैं।

लगा हुआ है जो कि बंद है अंदर की तरफ भी लाइटे जल रही है।

स्टेशनरी लिखा हुआ है यहाँ पर काउंटर रखा हुआ है और बाहर की तरफ से दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहै हैं बाहर स्कूटी भी खड़ी हुई हैं ।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये एक टूटा टूटा सा घर दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए इसकी दीवारें भी टूटी सामने की तरफ इसमें कुछ दर जैसे बने हुए हैं और पीछे की त--

दृश्य में हम देख पा रहै हैं ये एक पार्क का दृश्य है जहां पर देखिए बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और बड़े-बड़े से पेड़ लगे हुए हैं कैयरिया बनी हुई है।

इस दृश्य में हम देख पा रहै हैं ये एक कॉफी शॉप है यहाँ पर देखिए जिसका नाम डीएसपी सोडा एंड कॉफी शॉप लिखा हुआ है यहाँ पर एक मेज पड़ी हुई है।

इस दृश्य में हम देख पा रहै है ये एक चर्च के अंदर का दृश्य है यहाँ पर देखिए बैठने के लिए बहुत सारी बेंचे लगी हुई है सामने की तरफ एक मेज --